यहा बहुत बढ़िया तस्वीर नजर आ रही है और बालाजी महाराज की और पास में के एक और मुर्तिया नजर आ रही है यह बड़ो मंदिर बाणो नजर कोनी आरो तस्वीर काफी बढ़िया नजर आ रही है बालाजी महाराज की--

इस तस्वीर में नजर आ रहा है भारद्वाज मूर्ति आर्ट स्टेशन रोड मकराना की तस्वीर नजर आ रही है जहाँ पर सभी प्रकार की मुर्तिया --

तस्वीरें आसपास में लगायी गयी है छोटे छोटे पत्थर की मुर्तिया मंदिर के चारो ओर चिपकाई हुई दिखाई दे रही है।